यहाँ पे काफी सारा मैंदान डला हुआ है वहाँ पे खम्बे पे ऊपर बेनर लगा है बहोत बड़ा सा।

यहाँ पर नीचे सामने पानी भरा है जो हरा-हरा है बाजु में पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। आजु बाजु में पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे बड़े-बड़े पत्थर हैं।

और वो उस दुका हौंडा शोरूम में काफी सारी गाड़ीयाँ खड़ी हुईं हैं कांच लगा हुआ है। बाजु में पेड़ लगा हुआ है ऊपर से लाइट की तार जा --

कुछ दिखाई नहीं दे रहा पीछे भी हल्का सा मकान जैसा --

यहाँ पे पुराने समय की दीवाले लग रही है। यह जिनपे जि चोई चढ़ गई है नीचे सड़क जैसा दिखाई दे रहा है उनपे भी चोई चढ़ गई है सामने भी --

सामने बहोत सारे लोहे के पाइप लगे हुए हैं। उनमें माइक बंधे हुए हैं। पीली --

टेंट जैसे लड़ी सी बांध रखी है जो लटक रही है।

यहाँ पे जंगल की तरह दिखाई दे रहा है। चारों ओर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। काफी दूर-दूर तक --

ऊपर से फूल गिर रहे हैं। ऊपर झंडा लगा हुआ है। वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है।